सफेद रंग का मंदीर है मंदिर की सबसे चो- ऊंची चोटी पर जाने के लिए सीढी लगी हुई है।

नदी है नदी के पानी मे बीचो बीच खड़े पत्थरो पर घसरपट्टी जैसी डिजाइन बनी हुई है ।

बिल्डिंग है बिल्डिंग के दीवार पर ड्रॉइंग उतरी हुई है सामने गमले लगे हुए है।

पीछे दुकान है मकान है रास्ता बना है ।